जिसमें छोटी छोटी हरी हरी घास खड़ी है।

जिसमें बहोत सारी रंग बिरंगी साड़ी रखी हुई है।

एक खाली मैदान है जिसमें हरी हरी घास खड़ी है।

यह एक जिम सेंटर है जिसके बाहर कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं।

जिसमें बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है और कुछ आदमी भी खड़े है।

इसमें एक शीशा लगा हुआ है।

और एक आदमी खड़ा है उसके हाथ में एक फोन है।

और एक तार भी दगा हुआ है बाहर कुछ पेर हैं।

ये एक रेलवे स्टेशन है।

और टीन भी लगे हुए है कुछ आदमी बैठे हुए है।

और बहोत सारे तार भी खींचे हुए है और पीले रंग का उसमें कलर हुआ है।

और नीचे कुछ गुब्बारे बिखरे पड़े हैं।